और आस-पास जो है कुछ लाइट लगी है और ऊपर जो है चंद्रमा दिख रहा है और अ इस स्टेज के सामने जो कुछ कुर्सियाँ लगी है और वहाँ पर कुछ व्यक्ति भी बैठे हुए है और इस स्टेज पे काफी लाइट है।

और कुछ पेड़-पौधे जो है आस-पास लगे है और काम्प्लेक्स के पास-पास जो है लाइटे लगी है।

यहाँ एक मॉल है और मॉल का जो ऊपर का फर्श है वहाँ लाइट लगी है और कुछ बोर्ड लगे है और कुछ पम्पलेट लगे है जो की डिस्क्रिबे कर रहे है।

बहुत से डी.जे. लगे है और डी.जे जो है एक गाड़ी में लगे है और इनके पास कुछ टेबलस लगी है और कुछ तिरपाल रखे है आस-पास जो है कुछ घर भी बने है।